ग्रीन कलर का लाइट है और एक बड़ा सा पंडाल उसपे लिखा हुआ है होटल तंदूरी नाइट्स --

उसके नीचे चाय कॉलिंग लिखा है और उसके नीचे आई_सी_आई_सी_आई बैंक लिखा हुआ है जिसका रंग --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ यह दृश्य बारिस के मौसम का दृश्य दिखाया हुआ है पूरा गा--

और एक स्कूटी भी लगा हुआ है एक आदमी ब्लैक और ब्लैक कलर का टी-शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहन के बाहर हाथ बांधकर खड़ा है उसके बगल में एक आदमी गोल गप्पा खाता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पे --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक गोमती दुकान का फोटो दिखाया गया है।

इसमें वोडाफोन और यहां उपलब्ध है ऐसा लिखा हुआ है लाल रंग के रंग से लिखा हुआ है और वो --

अ बहुत सारा चिप्स का दुकान में लगा हुआ है पैकिट बहुत सारा समान --

उसका नंबर लिखा हुआ है ॐ लिखा हुआ है और स्वस्तिक का बहुत सुंदर डिजाइन है और --

और जो कार्पेट पे वो बैठी हुई है और वो कार्पेट का भी रंग लाल रंग का है उसके पीछे भी एक वाइट रंग का पर्दा लगा हुआ है --

लोग फूल खरीदने के लिए भी बहुत भीड़ लगाए हुए हैं एक मेला जैसा है और बहुत सारा सामान रक्खा रखा हुआ है।

बाहर लाइटिंग लगी हुई है और बैलून भी लगा हुआ है राधे कृष्ण की मूर्ति बहोत ही प्यारी और खूबसूरत है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये दृश्य एक गुफा का दृश्य दिखाया गया है गुफा बहोत ही सुंदर सिल्वर कलर का है गोल्डन कलर का है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ एक सैलून का दृश्य दिखाया गया है सलून में बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।

उसके बगल में भी एक आदमी है जिसका मिरर में फोटो आया है जो कि लाल रंग का टी-शर्ट पहने हुए है।

सारा समान रखा हुआ एक बोटल भी रखा हुआ है और चेयर पे कुछ समान भी रखा हुआ है बोटल का रंग ग्रीन कलर का --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं एक बैग की दुकान का दृश्य दिखाया गया हैं बहोत सारा बैग टंगा हुआ--

बहुत ही खूबसूरत दुकान है इसके ब अंदर में फोटो बनाया हुआ है और एक स्टैंड रखा हुआ है एक आदमी का स्टैंड है जिसको--

मंदिर बहुत ही सुंदर है हनुमान जी का फोटो बना हुआ है बाँस लगा हुआ है और एक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं बहुत ही बड़ा नेट का फोटो लगा हुआ है।

रंग भूरा रंग का है और वहां सीमेंट जैसा दिखाई दे रहा है सीमेंट भी लगाया हुआ है और नेट --

मोबाइल टंगा हुआ है और बाहर में लिखा हुआ है वी लव लैपटॉप्स उस लैपटॉप --

उस लैपटॉप का भी सामान है व लगाए जाने वाले सारे सामान लगाए हुए हैं जो की डब्बा में रखा हुआ है।

एक छतरी लगाया हुआ है छतरी का रंग जो है ग्रीन और ब्लैक कलर का है।

एक आदमी अपने हाथ में एक कप लिया हुआ है उस कप में कॉफी है कप का रंग लाल रंग का है उसके ऊपर नेस्कैफे लिखा है --

हंसता हुआ दिखाई दे रहा है उसका आंख में चश्मा लगा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहां एक हेयर कटिंग सलून का दृश्य दिखाया गया हैं जिसमें एक--

स्टूल पे और वो ब्लैक कलर का जींस पहना है ब्लैक कलर का जूता पहना है और वो किसी आदमी से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है उसने मास्क भी लगाया है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये बहुत ही सुन्दर पहाड़ी दृस्य दिखाया गया है घूमने का दृस्य है यहां पे एक झील जैसा बना हुआ है।